के लिए मेकिंग चार्ज बहुत कम--

कुछ दिखाई दे--

दिखाया जा रहा है।

रहा है बाहर रिक्शा वाले खड़े हुए हैं।

आप को ए_सी रूम मिलते हैं वाई फाई --

और ये दोनो जानवर आप--

बैठे हुए दिखाई दे रहे है।

चढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है जो--

तस्वीर में आपको इलेक्ट्रिकल --

बाहर डी_जे लेकर नाचते हुए दिखाई--